गाड़ियां सभी आ जा रही हैं कुछ पैदल लोग आ जा रहे हैं दुकान दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रहा है ये है ऑफिस है।

जिसमें एक डोर है जो बंद है और यहां पर हमारे सरस्वती माता के फोटो रखा हुए हैं।